ये एक सैलून का फोटो है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है इ.जे. हेयर फॉल मेन्स लक्ज़री सैलून मीन्स ये एक मेन्स लक्ज़री सैलून है।

ये मुजफ्फरपुर के अ बनारस बैंक चौक का एक फोटो है जो कि मुजफ्फरपुर ब्रांच के नाम से जाना जाता है और ये विजया बैंक के नाम से एक ए.टी.एम. बनाया गया है।

और उसके बगल में ठाकुर प्रसाद काम्प्लेक्स भी मौजूद है जो कि काफी पुराना कोम्प्लेक्स है।